यहाँ पे एक लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग| यहाँ दो लड़कियां खड़ी हुई हैं। लाइट लगी हुई हैं पर्दे लगे हुए हैं उनमे लाइट लगी है|

यहाँ पे वहाँ पे नदी बनी है। नदी के निकल रहा है। पानी निकल रहा है।